उसके अंदर एक व्यक्ति जाने की प्रयास कर रहा है।

परिसर का निचला हिस्सा ब्राउन रंग का है।

एक ने हरे रंग की और वाइट रंग की टी_शर्ट पहने हैं नीचे ब्लू कलर की पैंट पहने हैं।

एक ने वाइट रंग की शर्ट और वाइट रंग की पैंट पहने हुए--

यह दृश्य एक स्कूल कैंपस का है जहां पर ढेर सारे बच्चे बैठे हुए हैं।

सामने में ढेर सारे टीचर्स बैठे हुए हैं।

होर्डिंग पे सुप्रीम उज्जवल सेनेटरी लिखे हुए हैं।

पाऊडर रखे हुए हैं।

वहां पे बॉक्सेस भी रखे हुए हैं कुछ समान मिल्टन की बॉक्स में रखे हुए हैं।

जहां पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी आफ झारखंड लिखे हुए है वहीं पे ढेर सारे पेड़ पौधे भी है।

इसकी दीवाल येलो रंग की है वहीं पर एक कुर्सी रखी हुई है जिसकी कलर येलो ब्लू और वाइट रंग की है।

वहीं पे ढेर सारी पेंट भी रखे हुए हैं एशियन पेंट्स उसपे लिखा हुआ है।

वहीं पर दो बड़े से साउंड बॉक्स रखे हुए हैं जिस पर सिंह साउंड सेमरी लिखा हुआ है।

यह दृश्य छठ पूजा की है।